और इस दुकान के अंदर बहोत सारे इंसान भी खर खरे हैं।

कुछ रेफ्रिजरेटर छोटे हैं और कुछ लंबे हैं और रेफ्रिजरेटर के कलर भी बहो--

यह एक हॉल है इस हॉल में बहोत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

अब जो आदमी खड़ा है उसने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है।

ये एक जगह है इस जगह में चारो साइड कुछ जाले बिछी हुई हैं और इस जाल के अंदर--

पौधे लगे हुए हैं जो हरे हरे हैं और इस जाल के बाहर भी कुछ लम्बे लम्बे भी पौधे हैं।

और इस मंदिर के ऊपर नीला नीला आसमान है जो देखने मे बहुत ही सुन्दर लग रहे है और ये इंसान हरे कलर के जंगल के बीच--

और उस दुकान के अंदर रैक है रैक में बहोत सारी किताबे भी रखी हुई हैॆं।

बहोत सारे फूल हैं कुछ गमले में हैं और कुछ जमीन पे और इसके बगल में एक --

यह एक जगह है इस जगह पर एक ऊंची दीवार है इस दीवारे पे दो बच्चे बैठे हुए हैं जो मोबाइल देख रहे हैं।

ये एक बहोत बड़ा सा फिल्ड है इस फिल्ड में बहोत हरी हरी घास तुड़िया लगी हुई है।

जो देखने में बहोत ही सुन्दर है इस मिल्डी में बहोत सारे आदमी हैं।

ये एक नदी है इस नदी का पानी नीला नीला है।

जो बहोत सारे फलो को देख रहा है ये सारे फल बहोत --

ये एक दुकान है इस दुकान का नाम कजरिया है इस दुकान के अंदर--

टेबल है टेबल के अंदर दो कुर्सी है और उस पे दो इंसान बैठे हुए हैं।

और उस के बाहर दो इंसान खड़े हैं इस दुकान के अंदर बहोत छोटी छोटी लाइट्स और पंखे लगे हुए हैं।

कुछ दुकान पर कुकरेरिया नाम लिखा हुआ है उसका रंग ब्लू--

ये एक बहोत बड़ा सा फील्ड है इस फील्ड के अंदर--

ये एक इंडियन रेलवे ट्रेन है इस ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ और ये ट्रेन रुकी हुई है।

और इसके चारो बगल कुछ हरे हरे पेड़ पौधे भी हैं।

और यहां पर खिली खिली धूप भी नज़र आ रही है इस हॉल में सफ़ेद सफ़ेद कलर की दीवाले हैं।

इस हॉल के अंदर अंधेरा भी है और एक गाड़ियां यहाँ पे तिरछी लगी हुई--

और यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं।

कुछ पत्थर कुछ चट्टाने हैं और दूर घोड़ा कना घरा गहरा नज़र आ रहा है।

ये एक विजय पुस्तक भण्डार है इस विजय पुस्तक भण्डार के अंदर एक आदमी है।

ये एक दुकान है इस दुकान के अंदर दो चार रैके पडी हुई है बहुत लंबी लंबी उन रैको मे बहुत सारी किताब कॉपी भरी हुई है।

ये बहोत सारे लाइट्स लगे हुए है और इसके दरवाजे शीशे के है और इस जगह के चारो बगल--

सभी कलर के मैट हैं और इसके चारों साइड बहोत बड़े बड़े घने घने जंगल--

यह एक एस्टेज बना हुआ है इस एस्टेज के ऊपर एक पोस्टर लगी हुई है।

जो आसमान में उड़ने की कोसिस कर रहा है इसके चारो साईड बहोत छोटे छोटे पोधे भी लगे हुए हैं।

और इस गार्डन के बगल में एक छोटा सा घर भी है और इसके बगल में--

कपड़े पहन रखे हैं और इसके पीछे गड़ा घना अँधेरा है और इस मेज के ऊपर कुछ रौशनी भी आ रही है।

वाइट कलर के सींगें है और इस क आगे छोटा सा दिवाल है और ये सारे भैंस इधर उधर देख--

यह एक स्टेज है इस स्टेज पे एक लड़की डांस करती हुई नज़र आ रही है।

और कुछ पीले पीले सरसो के फूल हैं इस खेत के अंदर तीन आदमी भी हैं।

कुछ खेत में बैठे हुए काम करते हुए नजर आ रहे है और कुछ पौधे बहोत लम्बे लम्बे हैं।

कुछ हरे हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं इसके पीछे एक रास्ता जाता हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ एक शॉप है शॉप के आगे एक गाड़ी लगी हुई है।

और इस मंदिर के गेट पे एक बहोत बड़ा सा पर्दा भी लगा हुआ है और एक पीला पीला कलर का ग्रिल भी।